ये पार्क है और यहाँ तरह तरह बच्चों के लिए झूला लगा हुआ है झूलने के लिए वृक्ष भी है साफ-सुथरा पार्क दिखाई दे रहा है| पीला रंग का लाल रंग का हरा रंग का है बच्चों का खेलने बाला सामान है ये सो बच्चें खेलते है ये और ये अच्छी तरह से सजा --

ये चर्च है | चर्च में प्लस ईशु मसीह का |

एक गैरज है जिसमे वर्कर लोग काम कर रहे हैं और हाथ में आपने औजार रखे हुए हैं व्हाइट कलर की गाड़ी भी बगल में है और लाल रंग का वो जैसा दिख रहा है और ड्रेस पे अपना काम कर रहे हैं वर्कर लोग और मिस्त्री लोग और पब्लिक भी खड़ी है।

यहाँ ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है ऑर्केस्ट्रा हो रही है संगीत का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ सजा के बहुत तरह के सजाया गया है लाइट की व्यवस्था है और यहाँ बिंजू बजाते हुए है।